सामान रखा हुआ है केला-वेला सब सजा हुआ सामने में ।

और काफी भी काफी बड़ा है और भीड़ भी सब औरत लोग बैठकर देख रही है और सामने में मंच बना हुआ है ।

बहोत सारी लड़की लोग है सब डांस कर रही है और बहोत खुबसूरत फूल इससे सजा हुआ है बैलून से और कलर बहोत अच्छा लग रहा बलून का--

पूजा हाथ दिखाके कर रही है सब औरत लोग काफी औरत लोग है और हरा- हरा पत्ता नजर आ रहा पानी में --

दुकान है लाइन लाइन से और आगे में सब्जी वाली सब्जी लगा के एक औरत है लाल झोला लेकर--

खरीद रहा है बाकी यार सब अन्दर में बैठे हुए है और बहोत सारा एक लाइन से कपड़ा रखा हुआ है जीन्स वीन्स भी है।

और रूम भी बहुत बड़ा सा है और रूम का कलर बहुत अच्छा लग रहा है ।

दुकान है और हर चीज इसमें टंगा हुआ है और डब्बा - डब्बा में सजाके रखे हुए है आगे में --

बहुत बड़ा सा फील्ड { है बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे लोग खेलने वेलने का बहुत अच्छा जगह है और दूर - दूर तक पेड़ है। }

दुकान है और दुकान में एठो लड़का खड़ा है और उसके बगल में भी दुकान है अ एकठो सेटर बंद है सेटर गिरा हुआ हैं।

सब खेल रहा है बैट बॉल और बहोत सारा लड़का लोग है और दू ठो बड़ा-बड़ा लाइट लगा हुआ है और बहोत बड़ा--

बहोत बड़ा नदी है और पूरा सजा हुआ है नाई लगा हुआ है और सब नाई का कलर बहोत अच्छा-अच्छा है अर बहोत बड़ा है ।

सजा हुआ रूम बहुत खुबसूरत लग रहा है वाइट कलर का कलर किया हुआ है ताक पर सब सामान सजा हुआ है।

और घरों में सब बैठे हुए है एक लाइन से पूजा करने के लिए सारे पंडित लोग यहाँ--

और बहोत भीड़ लगा हुआ है और नीचे का बहोत बड़ा सा मैदान है और पंडाल के बगल में पेड़ वेड है।

बहोत अच्छा लग रहा है काफी भीड़ है सब नीचे में गप हो रहा है।

भोत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और पूरा फूल से सजाया हुआ है।

और बाउंड्री के पीछे पेड़ है बोहोत सारा घना- घना और बोहोत अच्छा लग रहा है पेट्रोल पंप देखने में --

बहुत बड़ा नदी है और नाई बहुत सारा और नाई पर एक लड़का बैठा हुआ है फ़ोन पे बात कर रहा है।